अउ पेड़ दिखथे बादल दिखथे घास फूस दिखथे नाली दिखथ--

य आदमी दिखत हे पेड़ दिखत हे पौधा दिखत हे बंदर दिखत हे आदमी के परछाई दिखत हे।

दिखत हे मुसबी दिखत हे अऊ काला अंगूर दिखत हे जामुन दिखत हे।